सामने की दीवार पर अलमारियां बनी हैं जिन पे शीशे रखे हैं।

ऊपर बोर्ड लगा है जिस पर एल_जी लिखा हुआ है।

जिसकी छते सफेद कलर की हैं और छोटी छोटी लाइटे लगी हुई हैं।

जिसकी जमीनों पर चटाइयां बिछी हुई हैं क्रीम कलर की लंबी सी।

सामने एक आदमी है जो कि ब्लैक कलर की शर्ट पहने हैं।

इसके ऊपर फूल लगे हुए हैं येलो कलर के।

बहोत सारे सफेद कलर के अ गमले रखे हुए हैं उन पर पेड़ लगे हैं।

सामने वाल काउंटर है जिसके ऊपर का हिस्सा शीशे का बना है।

सामने वाल बड़ा सा एक हॉस्पिटल है।

छज्जे बने हुए हैं जिन पर रेलिंग लगी हुई हैं।

जिसके सामने की दीवारें क्रीम कलर की हैं।

लंबी सी रोड बनी है और कोने में जो लोहे की रेलिंग लगी हुई है।

ग्रीन कलर के बड़े बड़े पेड़ हैं बहोत सारे बादल हैं आसमान में--

उस पर स्विच बोर्ड लगे हैं दो सफेद कलर के।